यहां आधार कार्ड की नोंदनी करी जाती है।

यहां शॉप में काफी सुंदर टाइल्स लगी है और बहोत अच्छी लाइटिंग लगी हुई है।

इस चित्र में हमें यहां पर एक रेस्टोरेंट का चित्र दिखाई दे रहा है।